इसमें ब्लू बादल और वाइट कलर का बादल लोग दिख रहे है।

और हम लोग को नीचे में टाइल्स भी लगा हुआ दिख सकता है यहां में सारा समान शीशा में पैक है।

एक रोड देखने को मिल सकता है।

ब्लेंडर्स प्राइड मैजिक मोमेंट ओकेन ग्लू रॉयल स्टेज और भी बहुत सारा यहाँ पे ड्रिंक्स का सामान रखा हुआ दिख सकता है।

यहां पर हम लोग दो तीन टेबल और चेयर लगे हुए देख सकते हैं।

यह के साइड रोड का तस्वीर लग रहा है।

ये फोटो में मुझको एक ब्लू कलर का बिल्डिंग देखने को मिल सकता है।

और दो तीन आदमी देखने को मिल सकता है।

इसके आगे में हम लोग को बहुत सारा लाइट भी देखने को मिल सकता है।

यह फोटो में हम लोग को एक व्हाइट कलर का मंदिर देखने को मिल रहा है।

सारा पेंट का सामान में देखने को मिल रहा है।

और हम लोगों को बहोत सारा प्लांट भी देखने को मिल सकता है।

फ्लावर्स का कलर येलो और ऑरेंज है और रेड भी है।

हमे ब्लैक कलर का टेबल भी रखा हुआ देख सकता है।

ये फोटो शायद से किसी मैच के दौरान लिया गया है।

यहां पे बहुत सारे लोग बैठ के कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं।

और शीशा से बना हुआ दो रैक भी देखने को मिल सकता है।

ये फोटो में हम लोग को एक रोड का किनार किनार में बहुत सारा तिरंगा लगा हुआ दिख सकता है।

और रोड पे हम लोग को चार पांच आदमी लोग आता हुआ दिख सकता है।

एक बोर्ड पे फ्रॉम तेजू टू तिनसुकिया पासीघाट भी लिखा हुआ है।

जो की एक समुद्र का अंदर में तैर रहा है।

सामने में हम लोग को सन दिखाई दे रहा है।

यहा पे तीन चार कर्तन भी लगा हुआ है।

ये फोटो में हम लोगो को एक बहोत बड़ा बिल्डिंग दिख जिसको ऑरेंज कलर से पेंट किया हुआ है।